बाजू में एक डलिया दिखाई दे रही है उसमें कुछ सामान रखा है।

ये तस्वीर एक हॉल की है जिसमें चार दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

सामने दो टी शर्ट एक नीले कलर की एक सफेद कलर की टंगी है।

मंदिर की कोने में एक बोर्ड लगा है जिस पे जय श्री बालाजी महाराज लिखा है।

कांच की सोफे टेबल तीन लाल कलर की खंभे दिखाई दे रहे हैं।

उसमे काफी सारे पंखे ट्यूबलाइटें और सामने ईसा मसीह का स्तंभ दिखाई दे रहा हरे कलर का कपड़ा टंगा है।